इस पिक्चर में हम देखते हैं एक बिल्डिंग को।

जोकि काफी ऐज का है और कंप्यूटर चला रहा है यहाँ काफी सारे कंप्यूटर है ।

फिर हम देखते है की लेफ्ट साइड में एक पेड दिख रहा है ।

और बाजु में तमिल लैंग्वेज लिखी हुई है।

जो कि काफी सुंदर दिख रही है।

एक लड़का दूसरे लड़के की दाढ़ी बना रहा है।

यहां कुछ बड़े-बड़े पत्रों को भी दे --

जहां बादल है वहां हमे थोड़ा सा कोहरा भी दिख रहा है।

और ऊपर से लोग अपनी-अपनी बालकनियो और अपनी-अपनी छतो पर चढ़ के इसे देख रहें हैं।